एक ऑटो ग्रीन कलर का बहोत सारे लोग एक गाड़ी पे बैठे हुएं--

मैं इमेज को देख रही हूं जिसमें--

काई ब्लू ग्री और ब्लैक कलर में मिक्स है।

और यहां पे बहोत सारा पानी है और उसे पार रेत दिखाई दे रहा है रेत के पीछे बहोत सारे पेड़ और पौधे औ--

मे एक इमेज को देख रही हूं जिसमें व्हाइट कलर का बोर्ड है।

यहां पे बाइक्स और स्कूटीज नजर आ रहें हैं

देन लिखा हैं सिंधु यूथ एसोसिएशन देन लिखा है देवेंद्र नगर रायपुर सी_जी और दो फोन नंबर्स है और ये कत्थे की--

सिल्वर ब्लैक कलर का उसमें एक लेबर की कैप टंगी है लेफ्ट साइड में बहुत सारी फोटो फ्रेम टंगी--

पिंक कलर के पट्टी पे ब्लू और वाइट कलर में लि--

और सामने एक मोमेंटम बना है ऑरेंज कलर का उसमें अशोक चक्र बना हुआ है लेफ्ट में झंडा बना है एक राइट में एक झंडा है और दो शेर बने हुए हैं।

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें एक मंदिर का इमे--

मैं यहां पे कांच कांच के--

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें एक सिस्टर खड़ी है गाउन जैसा पहन के व्हाइट कलर का एप्रन ब्लैक कलर की चप्पल --

प्रवेश निषेध लिखा हुआ है उसमें आमरस--